एक चेयर का कलर ब्लैक एंड व्हाइट है और एक चेयर का कलर ब्राउन है।

यहां पे बहुत सारे चेयर नजर आ रहे हैं।

यहां पे अगल बगल बहोत सारे पहाड़ नजर आ रहे--

नदी के साइड में बहोत सारे बालू भी है।

इस दृश्य में आगे एक पोस्टर नजर आ रहा है जिस पर लिखा हुआ मिस्टर दीपक कुमार सिन्हा एंड चित्रांश इंजीनियरिंग कंसलटेंट पी_वी_टी एल_टी_डी ।

सामने में एक गेट नजर है जो किसी शीशे का है।

उसपे डिजाइन बनाया हुआ है जो कि फ्लावर्स का है।

इस दृश्य में पांच लड़कियां नजर आ रही है।

की चटाई पे बैठके योगा कर रही हैं।

बगल वाले घर का कलर व्हाइट नजर आ रहा--

रथ में बहुत सारे कलरफुल लाइट्स भी जल रहे हैं।

अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे नजर जोकि ग्रीन कलर के हैं।

नीचे में बहुत सारे बाइक पार्किंग किए हुए--

इस पे लिखा हुआ बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू व्याघ्र आरक्ष--

इसके चक्के का कलर ब्लैक है और इसके चक्के के बीच में एक सिल्वर कलर का कुछ लगाया हुआ है।

सामने में बहुत सारे तार नजर आ रहे हैं जो कि वायरिंग का है।

सामने मे दो आदमी नज़र आ रहे हुए है जो कि एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए--

ऊपर में कलरफुल झालर लगाए हुए।

ऊपर में बलूंस भी है जिसका कलर येलो --

यहां पे सामने के कबड में बहोत सारे सामान रखे हुए--

सामने में एक टेबल चेयर लगाए हुए है।

यहां पे नीचे के कबर्ड में बहुत सारे कपड़े रखे हुए--

दृश्य एक पेंट दुकान का है।

दृश्य में सामने एक औरत नजर आ रही है।

पीछे मे बहुत सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

यहां पे बहुत बड़े बड़े मशीन रखे हुए हैं।

सामने के दीवाल पे एक मीटर लगाया गया हुआ है जिसका कलर ब्लैक और व्हाइट है

सामने में एक पोस्टर नजर आ रहा है जिसका कलर व्हाइट येलो ब्लू रेड ग्रीन है।